ये बिगबॉस प्रकाश वस्त्रालय रमानुजगंज का है इसमें बहुत सारा कपड़ा-वपडा कार्टून वार्टून में पैक किया गया हुआ है और इधर अक्षय कुमार का पो पोस्टर भी लगा हुआ है।